ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और कार भी है और ऊपर लाइट भी लग रही है।

और मेरे सारे आदमी भी हैं।

यह एक पैलेस है और इसमें कुर्सियां भी धारी है।

और कप भी धरे हुए हैं और लाइट लग रही हैं।

और यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं।

और एक बोतल भी धरी है।

यह एक कमरा है और इसमें शीशे वाला बेड है।

यह एक मंदिर है और इसमें बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

एक बोर्ड भी है और मशीन भी धरी है।

और कालीन भी गिरी हुई है नीचे।

और गाजर और शिमला मिर्च भी है और तोरी भी है।

खाना खा रहे हैं और बेंच भी धरी हुई है।

और इसमें बहोत सी आई_सी भी लग रही है।

बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

ये पे पो की दुकान है।

और नीचे फरस भी गिरा हुआ है। पत्थर बिछा हुआ है और तेल पत्थर बिछा हुआ है।

यह एक कमरा है और इसमें ऐ_सी भी लग रही है।

बेलपत्थर भी लगे हुए हैं और बेंच भी धरी हुई है और कुर्सियां भी धरी हुई है।

और इसमें कई तरह की बेंच धरी हुई है शीशे वाली भी धरी हुई है।

इसमें लाइट भी लग रही है बहुत सारे पंखे लगे रहे हुए--

और इसमें बहोत सारी मशीने धरी हुई और डंपर भी धरे हुए हैं।